इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक टेबल नजर आ रही है और कुछ चेयर रखी हुई नजर आ रही हैं। सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है।

इस बिल्डिंग के सामने आपको एक छोटा-सा गार्डन बना हुआ दिख रहा है।